और यहां बहोत सारी लाइटे जल रही है हमें यहां--

ये तस्वीर एक रूम की है।

बना हुआ है जो लाल रंग में--

ये तस्वीर एक हरी भरी जगे की है यहां--

ये तस्वीर एक कारखाने की लग रही है इसमें बहोत सारा फट्टे--

इसमे बहोत सारी पेप्सी की बोतलें रखी हुई दिख रही हैं और यहां--

इसमें बहोत सारी फाइले रख--

बहोत सारी पहाड़ियाँ और हरी भरी घास दिख रही है यहां पर बहोत सारी--

मेरे अनुसार ये तस्वीर एक टेलरिंग शॉप की है इसमे बहोत सारे कोट पेंट --

यह तस्वीर बहुत सारी कारों की है।

यहां पर कई कड़िया भी--

ये तस्वीर बहोत सारे सोफासेट की हैं इनका रंग--